विंग के आस-पास भी मकान दिख रहे हैं ये पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं ये विंग की बिल्डिंग के पास में --

और सामने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर एक बुक रखी हुई है।

निचे बर्फ़ सी जम रही हैं ये सामने दूरी पर कुछ नीली-सी एक सुन्दर-सी पहाड़ियाँ दिख रही है बड़ी-बड़ी सी ये --

लेहरो में ये तीन चार व्यक्ति बोटिंग करते हुए दिख रहे है।